ये एक कपड़ों की दुकान का फोटो है।

इस बिल्डिंग के ऊपर लिखा गया है अरुण दृष्टि आई सेंटर ।

इस बिल्डिंग की एंट्रेंस शीशे की बनी गई है।

फार्मेसी में एक आदमी खड़ा हुआ है।

एक जगह में पिंक और ब्लू कलर की लाइटें जल रही है।

महल के आगे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

इसकी गेट मेटल रेलिंग से बनाई गई है।

एक मुर्गी के सामने एक बहुत बड़ा गमला है।

उसके साइट पर पर पौधे भी लगाए गए हैं।

एक मैनिक्विन खाली है दूसरी मैनिक्विन पर ट्रेडिशनल कपड़े रखे गए पहनाए गए हैं।

पर योगा कर रहे हैं।

नदी के छोर पर कुछ हरियाली दिखाई दे रही है।

बास्केटबॉल फुटबॉल आदि और उस उसी शेल्फ पर शर्ट को अच्छी तरह से मिलकर रखा गया है।

एक नीला कलर का है और गेट में लिखा है नीचे ओ स्कूल रास्ते के दोनों तरफ हरियाली है।